बैठे हुए हैं बाइक पे और कुछ लड़का जो है।

ये जो है यहां पे एक ऑफिस है और ऑफिस के बाहर जो है--

ये जो है एक मीठा फल का दुकान है।

पूरा लाइट लगा हुआ है और इधर एक आदमी जो है साड़ी खोल के दिखा रहा है ऑरेंज कलर का साड़ी है।